घूमने आए हुए है और गुब्बारे यहां पे एक आदमी गुब्बारे बेच रहा है।

और सामने ऑरेंज कलर का पेंट हुआ है।

स्कूल के बच्चे खड़े हैं प्रार्थना कर रहे हैं सफेद कलर की शर्ट पैंट पहने हुए हैं।

खाना खाने आएं हुए है। पीछे एक टी_वी लगी हुई है ब्लैक कलर की तीन टेबल रखे हुए हैं ब्लैक कलर --

और टेबल भी रक्खा हुआ टेबल में भी कपड़े रक्खे हुए हैं एक आदमी खड़ा है खड़े होके देख रहे हैं दुकानदार हैं।

और आगे घर के आगे ग्रे कलर की फर्श है।

ये एक कमरा है कमरे में हरे हरे कलर की कारपेट है।

बुलडोजर खड़ा है एक आदमी बुलडोजर के टायर्स घुमा रहे एक आदमी खड़ा है ऊपर और वो टायर --

डब्बो मे ल टोबी रखी है सामने फ्रीजर है उसमें कोल्ड ड्रिंक पेप्सी रखी हुई है।

यहां पे एक पंडि जी बैठे हुए हैं सामने एक रही टेबल है--

बैंक है बैंक के बाहर लोग इंतज़ार कर रहे हैं बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं बैंक खुलने का वेट कर रहे हैं सामने चार आदमी खड़े हैं।

एक आदमी कुर्सी प बैठा है और प्रेस कर रहा और सामने एक शर्ट है सामने एक दीवार लगी है।

और सामने एक लड़की जिम कर रही है आस पास पोस्टर लगा हुआ है ग्रे कलर की टाइल्स हैं।